उसी के सामने बहुत से लोग खड़े हैं।

उसे पहाड़ के ऊपर बहुत हरियाली है।

वहां पर बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है।

जेंट्स के कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक चर्च दिखाई दे रहा है।

सामने एक मकान दिखाई दे रहा है।

उस पौधे में रेड कलर का फूल लगा हुआ है।

सामने एक लेब दिखाई दे रही है।

सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा हैं।